कुछ लाइट्स भी दिखाई दे रही हैं कुछ खिड़कियाँ दिखाई--

नीला आसमान दिखाई दे रहा है और एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

कुछ पत्ते दिखाइं दे रहे हैं।

यहां पर बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं और एक गाड़ी दिखाई दे रही हैं।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

कुछ आसमान दिखाई दे रहा है और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

और कुछ रेड कलर के टमाटर दिखाएं दे रहे हैं और कुछ ग्रे कलर के।

कुछ टेबल दिखायी दे रहे हैं।

कुछ बैनर्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लाइट्स भी दिखाई दे रहे हैं।

नीला आसमान दिखाइं दे रहा हैं।

दीवार पर कुछ पोस्टर चिपकाए हुए दिख रहे हैं।

और कुछ लाइट जले हुए दिखाएं दे रहे हैं।